इस इमेज में यहां पर एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी किताबें जमी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में एक हाल दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे ड्राइंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग और एक सफेद रंग की कार भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है सामने एक मंदिर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है और एक कार पर दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सब्जी दिखाई दे रही है और यहां पर एक आदमी भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर अनार जलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति भी पास में खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ीसी रोड दिखाई दे रही हैं सामने एक बड़ासा बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कई सारी मिठाईयां शोकेस में रखी हुई नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक ओपन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी और कूलर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर अह एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर गमले रखे हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर सामने एक वाटर पार्क के दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर स्कूल दिखाई दे रही है और बच्चों के बैग नजर आ रहे हैं।